ये आप सब लोग देख ही सकते हैं यहां पे किसी ने एलईडी लगी हुई है दो कंप्यूटर है और दो कुर्सी भी है और यहां पे रेड और येलो कलर के बलून से तैयारी करी गई है।

'' जैसे के आप सब लोग देख सकते हैं। ये एक पुलिस स्टेशन तो नहीं लग रहा है क्योंकि एक स्कूल है क्योंकि आप सब लोग यहाँ देख सकते हैं यहाँ एक मेम है और जो अंदर कलसेस हैं वहाँ बेंच लगी हुई हैं। ''